यह एक गाड़ी का शोरूम है जिसमें तीन गाड़ी दिखाई दे रही है एक वाइट कलर की एक रेड कलर की एक ब्लैक कलर की।

और नीचे पत्थर जैसा कुछ बनाया गया है।

यह एक जैसा की हम को प्रतीत होता है कि यह एक वरमाला सो होने वाला है।

एक इंसान कुछ सामान खरीद रहा है और एक पाइप जो खड़ा है।

यह एक जिम सेंटर है जिम सेंटर में अपने बॉडी फिटनेस के लिए एक्सरसाइज किया जाता है और कोई चार इंसान कर रहे हैं।

दो लोग पु मूर्ति के पास पुजारी या को और अगल बगल इतने सुंदर से सजाई गई है।

यह स्मार्ट प्वाइंट मॉल है जो हर जगह अभी उपलब्ध है और ये पांच मंजिला मकान है।

की कलर ऊपर ब्राउन नीचे वाइट कलर की।

एक कैमरा ब्रोथर कंपनी की प्रिंटर सामने है।

इतने सारे कार्टूंस कुछ माउस ब्लूटूथ स्पीकर एक होम थिएटर वाइट रंग की दीवार--

एक इंटरप्राइज की दुकान है।

तीसरे भाई एंटरप्राइज पाइप जैसे खुला कल का सामान इसमें मिलता--

यह मंदिर वाइट कलर की है।

और पानी और लड़के के पीछे इतने ब्लैक कलर की काई जमी हुई है।

औ इस हो ढाबा के अंदर आठ दस लाइट जो दिख रही है।

यह एक राशन दुकान है।

सामने इतने सारे बोरियां रखी हुई है और इस दुकान की छज्जे वाइट ब्लू जैसे कुछ पेंट किए हुए हैं ।

एक स्कूटी ब्लैक कलर की सीट और व्हाइट कलर की है।

सारे लोहे की पिलर् सामने दिख रही है।

क्योंकि सामने इतने सारे मोबाइल्स हैं।